इस फोटो के अंदर मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई भगवान का प्रोग्राम होना चाहिए।

इस फोटो के अंदर मुझे कुछ कुर्सी दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है कि ये कोई फोटो खींचने वाला--

रेलवे स्टेशन दिख है और एक इसके अंदर लड़का दिखाई दे रहें और कुछ लोग भी बैठे हैं।

इस फोटो के अंदर मुझे कुछ मशीनें वगैरह दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है ये कोई हॉस्पिटल है और इसके --

एक मुझे बाल सुखाने वाली मशीन भी दिखाई दे रही है और कुछ पाउडर क्रीम भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कोई भगवान की मूर्ति है जिसके आसपास पत्थरों से कुछ --

बहुत अच्छा डिजाइन बनाया हुआ हुआ है और इस--

मुसलमान भाई भीं दिखाई दे रहें हैं जो अपने भगवान को पुकार रहें हैं और ये मस्जिद दिखाई दे रहीं हैं और कुछ ल --

लाइट वगैरह भी है इसके पास में एक घड़ी भी है और इस मस्जिद के अगले मोड़ पे एक बड़ा सा कांच का कुछ लगाया हुआ है।

कवर्ड है और ब्लैक कलर में कुछ लिखे हैं इसके पास में मुझे कुछ एक केन वगैरा भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ जंगले वगैरह भी लगाए हुए हैं और इसके पास में एक मुझे फैन दिखाई दे रहा है और कुछ छोटे छोटे टेबलें वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं।

पेपर वगैरा चिपकाए हुए हैं और इसके पास में एक मुझे खिड़की दिखाई दे रही है जिससे रोशनी अंदर आ रही है इसके पास में मुझे कुछ पेपर भी दिखाई दे रहे --

युगांतन नाम है इसके लग रही है कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए और इसके --

इस तस्वीर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक महिला भी दिखाई दे रही है और कुछ --